बिल्डिंग पे काहे काच भी लगी हुई है और लाल कलर के यह पर कलर हुवा है।

यहाँ पे एक मुझे एक भरा मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारे स्टुडन्ट अ है यहाँ पे जो की गेम मैच खेल रहे है काफी सारे गेम स्पोर्ट्स खेल रहे है।

ये एक फ्रु फ्रुट कि दुकान है यहा पे काफी सारे फल मुझे याहा दिखाई दे रहे है यहा पे खाली अंगूर--

यहाँ पे भगवान बुध की मूर्ति मुझे दिख रही है उनो उ मूर्ति का रंग नीला ओ पिला गोल्डन है।

बना रहे है इस दिवार का कलर मुझे यहाँ रेड दिखाई दे रहा है निचे जामनी कलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही --

यहाँ पे पे डम्बल दिखाई दे रहे है निचे टाइल्स लगी हुई है आजू बाजू दीवारों का कलर सफ़ेद दिख रहा है।

कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ पोधे दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पे --

अ टाइल्स लगी हुई है बड़ी बड़ी सफ़ेद कलर की यहाँ पे मुझे क्यापिझ दिखाई दे रहा है उपर।

और दिख रहे है।

और पीछे कुछ बिल्डिंग्स बने दिखाई दे रहे है एक कार यहाँ पे रखी हुई है और पार्क है यहाँ पे हरे पेड़ मुझे दिखाई दे रहे है।

उपर नीला आसमान मुझे दिखाई दे रहा है काफी बड़े बड़े पोल दिख रहे है यहाँ पे एक अंकल है जिहोने हरे कलर की स्वेटर पहनी है और अ--